यहां पर सेटर भी लगा हुआ है एक साइकिल भी खड़ी है नीचे कुछ पौधे भी लगे हुए हैं पीछे खेत भी है।

यह एक पार्टी की तस्वीर है यहां पर कुछ आदमी गिटार बजा रहे हैं।

पीछे एक सफेद रंग की दीवार भी है दीवार के पीछे भी बहोत बड़े बड़े पेड़ है इन फूलों का रंग है लाल येलो और ऑरेंज ।

यह एक बहुत बड़े मकान की तस्वीर है जिस मकान का कलर सफेद है।

दुकान के सामने एक बाइक भी खड़ी है जिसका रंग ऑरेंज है मकान के सामने बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया गया है।

आने जाने के लिए रास्ता भी बनाया गया है सामने एक बहुत बड़ा लोहे का गेट भी है।

टॉवर के अगल बगल बहुत सारे बड़े छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

मकान के ऊपर करकट लगा हुआ है मकान के बाहर छोटी छोटी घास भी उगी है यहां पर एक लाइट भी लगी हुई है यहां एक गाड़ी भी लगी हुई है।

बगल बगल में पेड़ पौधे भी लगाई गई है चर्च के बगल में भी एक चर्च है जिसका रंग ऑरेंज और येलो है।

यहां पर ए_सी भी हैं यहां साइड में एक कपड़ा भी रखा गया हैं यहां कुछ लोग भी खड़े हैं सामने एक बहुत बड़ी कुर्सी भी रखी गई है।

यह एक सड़क की तस्वीर है इसके सामने बहुत सारी दुकानें भी है यहां तिलकुट का दुकान भी लगा हुआ है।

यह एक मकान की अंदर की तस्वीर है जिस मकान का कलर सफेद है यहां बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

यहां पे बहुत सारे टेबल और कुर्सियां भी रखी गई है नीचे सफेद रंग की टाइल्स भी लगाई गई है।

नीचे भी एक बड़ा बोर्ड लगाया गया हैं जिसका रंग है ब्लू और उस पर लिखा है सैमसंग गैलेक्सी बगल में एक और मकान है।